और यहाँ पे लोग वहाँ पर ए_टी_एम के बहार खड़े हुए है दो लोग है और बोहोत साड़ी बाइके खड़ी हुई है और लोग वहाँ पर खड़े हो कर बाते कर रहे है।

इस चित्र के अंदर हमें जैसा की दिखाई दे रहा है इसमें अ छ लोग है और जो छ लोग है वो होली खेल के आए हैं।

देखिए उनके कपड़े जो है वो रंग बी बेरंगे हो रहे है और कलरफुल हो रहे है ।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो कोलोजीयम का है और इसमें तीन लोग जाते हुए दिख रहे हैं। एक सफेद रंग की शर्ट में है ये दो है।

और वो रोड मे से जो भी है लोग निकल के जा रहे है और साइड मे भी पेड़ है वहाँ दूसरे साइड --

और यहाँ फोटो जो है इसमें के डेकोरेशन पीछे हुआ हुआ है और दो लोग इसपे चेयर पे मतलब बेठे हुए है और पीछे इसमें जो है फुल लगे हुए है।

इस चित्र मे हमे दिखाई दे रहा है की एक पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है ।

इस चित्र में हमे दिख रहा है की सामने फुबरे निकल रहे है उसमे से पानी आ रहा है और जो ये जो बना हुआ है सीडिया टाइप की --

और सामने मैदान पड़ा हुआ है मैदान में एक ऐसी रस्सी बनी हुई है रस्सी से--

और उसकी शेविंग चल रही है और फेशियल वेशियल मुह का है जो चल रहा है और पीछे उसके बोहोत साडी चीज़े राखी हुई है क्युकी वो पार्लर में बेठा है।

और कोई जो है इसकी ये किसी जगह पे रखी हुई है और लोगो ने इसको रख के रखा है।

और आगे बार देखे तो बोहोत सारे गमले लगे हुए है और पेड़ लगे है।

इस चित्र में हमे दिखाई दे रहा है की सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के अन्दर बोहोत सारी ईएसआई छोटी छोटी बालकनी बनी हुई है बहार इसमें एक गेट है।

गेट के बाहर हमे दिखाई दे रहा है टैंकर टैंकर मे ये किसी का नाम लिखा हुआ है ।

और इनके पीछे एक और आदमी खड़ा है और ये जगह है भूरी--

आओ बहार बहोत सारे झंडे लगे हुए है उचाई पर और कुछ डॉक्टर्स आ रहे है एक डॉक्टर और आदमी आ रहा है।

इस चित्र में हमे आरती बुक सेण्टर दिखाई देरा है।

जिसमे बोहत सरे लोग खड़े हुए है और वो जो बोहोत सारे लोग जो है वो किताबे खरीद ने के लिए आये है यहाँ पे --

इस चित्र में हमे दिखाई देरा है की यहा पे बोहोत सारी कारे खड़ी हुई है।

और इसके पिछे जो है बोहोत सारी पेड़ है गार्डन बना हुआ है और बच्चो के लिए जुले लगे हुए है और कारे जो है वो बोहोत सारी खड़ी है।

इस चित्र मे हमे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे से एक आदमी निकल के जा रहा है ।

इस चित्र मे हमे बच्चे दिख रहे है जो बहोत सारे बच्चे है और ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए आए है ।

और इसके पीछे बहोत सरे पेड़ लगे हुए है और हमे जगह भी दिख रही है जो पूरी जमीन की है बीच में छोटी छोटी घास दिखाई देती है।

उसके साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो येलो कलर की कुर्ती पेहना है वाइट कलर का ट्राउसर और हमे पिंक कलर का डेकोरेशन दिख रहा है।

इस चित्र मे हमे मॅन सलून दिख रहा है जहां पे एक आदमी खड़ा है मास्क लगा के।

और उनके एसे पैर जो है वो हाथ से खीचे हुए है सामने जो है वो कांच लगा हुआ है और इन लोग की योगा मेट जो है वो बिछी हुई है।

दुसरे वाले पेड़ पे बोहोत सारे फूल है और बोहोत सारे पेड़ पत्ते फूल दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में हमे एक कपडे की दूकान दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे कपडे पड़े हुए है गूंज कर --

इस चित्र में हमे नई की दूकान दिख रही है और उस नई की दूकान में एक आदमी है जो नई है और वो एक अंकल बेठे हुए जो अपने बाल कटवाने आये हुए है।

इस चित्र में हमे एक आधा सा घर दिखाई दे रहा है जो ग्रे और ब्लू कलर का है और उसके साइड में हमे बड़ी लम्बी लम्बी घास दिखाई दे रही है।

दो तकिये है वाइट कलर के और एक चादर बिची हुई है जिसपे बोहोत सारे छोटे छोटे फूल बने हुए है।

इस चित्र में हमे एक टूरिस्ट प्लेस दिखाई दे रही है जिसमे अ पञ्च छे लोग जो ई वो जा रहे है।

और सामने हमें ए_सी का डब्बा दिख रहा है और एक जगह दिख रही है जहां पे कुछ लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें बहोत सारी सीढ़ियां दिखाई दे रही है सीढ़ियों के साइड से जो है वो और जगह गई हुई है।

और इसके साइड में रेलिंग लगी हुई है।

आ गेट है और पेड़ है ग्रीन कलर के और रेड कलर का ये जो है ये स्कूल है।

इस चित्र में हमे एक शादी दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारे वेटर्स खड़े हुए है और लोग खड़े हुए है और झूमर लगे हुए है।

और यहाँ पे जो है बाइक खड़ी हुई है और हरी बाढ़ माड लिखा हुआ है ।

इस चित्र में हमे एक आदमी दिख रहा है जो बेंच पे बेठा हुआ है निचे जो है बहोत सारी घास दिख रही है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं सफेद सफेद रंग के कपड़े पहन कर।

इस चित्र में हमे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे घासे लगी हुई है बहोत सारी एक जो है आदमी निकल के जा रहा है।

और बोहोत साड़ी चेयर भी लगी हुई है सामने और ए_सी लगा हुआ है और बोहोत सारी चीज़े है।